सुंदर सा पर्दा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक बेकरी है। बेकरी के अंदर काउंटर में--

कुछ पेस्ट्रियां दिख रही है पेस्ट्री के पास एक चॉकलेट केक भी--

दे रहा है टोलगेट के।--

दुकान दिखाई दे रही है जहां पर--

एक रेड सिग्नल बना हुआ दिखाई दे रहा है इसके सामने एक--

फिस बना हुआ है। जहाँ पर एक कांच का बना है। जहां --

चमेली के येलो कलर के फूल भी दिखाई दे रहे हैं।